बाहर कुर्सी पर दो तीन व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर साइड में एक इमारत दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

और दीवार पर सुंदर हाथी की डिजाइन करी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कुर्सी टेबल लगी है दीवार पर एक एल_सी_डी भी नजर आ रही है।

और दीवार पर दो तितलियों को स्टिकर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर शादी चलती नजर आ रही है।